यहां पर ब्लू कलर का दीवार है आसमानी कलर का है यह ब्लू कलर का भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत यहाँ पर बहुत सारा जिम मशीन रखा हुआ है जो दिख रहा है --

यहां पर एक प्लेट में छह गो प्लेट में बिरयानी रखा हुआ है और यहां पर बहुत सारी --

यहाँ पर एक अजीब सा टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पर बहुत सारा सामान --